सूखी हुई डाल है सफ़ेद नीला आसमान है अगल - बगल पेड़ - पौधे हरी पत्ती है काफी चौड़ी नदी है पानी भरा हुआ है सूखी हुई पेड़ है सूखी हुई डाली है।

सामने जो बोहत सारी कुर्सी रखी गयी है पोस्टर लगाये गये है ऊपर लाइट लगी हुई है सफेद रंग की और कत्थे रंग का पीले रंग का दीवाल हैं पोस्टर लगी हुए है जो रणवीर कपूर का चित्र बना हुआ है बहोत से कपड़े रखे गये है।

पेड़ है हर पत्ति सफेद नीला आसमान है बगल में पेड़ है हरी पत्ति है|